यह तस्वीर एक होटल की नज़र आ रही है यहाँ पर बहुत सारे चेयर और टेबल लगे हुए हैं टेबल पर कुछ डिशेस दिख रही है।

कुछ लोग टेबल पर बैठे हुए हैं दो व्यक्ति खड़े दिख रहे है।

इस तस्वीर में एक सी_यू_बी ए_टी_एम दिख रहा है ए_टी_एम के बाहर दो व्यक्ति देख रहे हैं।

पुलिस वाला है उसके सर पर टोपी है बंदूक दिख रही है और एक लेडिस भी नजर आ --

इस तस्वीर में एक खुले मैदान में एक प्रोग्राम होते हुए दिख रहा है यहाँ पर एक लड़के ने नीले कलर का ड्रेस पहना हुआ है।

ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है ब्लैक कलर का पैंट है पैरों में शूज है पैंट के ऊपर दो वाइट कलर की लाइन लग मारी हुई दिख रही है।